वी दिख रहीं है दो लोग डांस करते दिख रहें हैं फूलों का जूड़ा लगाए एक औरत दिख रही है नीचे बोर्ड लगा दिख रहा है।

भी बनी हुई है होटल श्रीराम ओम का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बोंडिया इलेक्ट्रिकल का भी दुकान है।

पड़ी हुई है यहाँ बड़ा यामाहा का शोरूम बना हुआ है ऊपर जाली का बोर्ड भी बना हुआ है बाइकों के पोस्टर यामाहा के लगे हुए--

यहाँ महादेव बेकरी एंड ढूढ डेरी से लिखा बड़ा सा बोर्ड पीछे दूध डेरी बनी हुई है दूध दही पनीर छाछ-- --